और उसके पीछे में एक फोटो भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर --

बहुत ऊँचा दिख रहा है जो लगभग पाँच छे छत का है।

और इसके और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति --

इस घर के गेट को बहुत सुंदर गुब्बारे से--

यहाँ पर बहुत सारे लोग मछली पकड़ - पकड़ कर बैठे हैं।

और बहुत सारे कैंडी वाले सामान दिखाई दे रहे है और--

और यहाँ पर सड़क के किनारे में एक बाउंड्री लगा हुआ हैं ।